की दुकान है यहाँ पर अनेक प्रकार के मिठाई भी रखे गए हैं एवं मिक्चर भी रखे गए हैं।

यह मंदिल में अनेक से मूर्ति भी होंगे यह मंदिल के बाहर बहुत सुन्दर-सुन्दर गार्डन भी है यहां गार्डेन में पेड़-पौधे भी लगे है यहां पर एक लड़का --

यह जगह पर बहुत सारे लड़के भी है यह लड़के फोटो घिचा रहे हैं यहां पर बहुत सारे लड़के चश्मा पहने हुए हैं अपने जूते भी पहने हुए हैं।

यह पहाड़ में बहुत सारे झरने भी बेह रहे है यह झरने बह कर तालाब बन गयी है यह तालाब के चारो ओर छोटे बड़े पत्थर भी है ।

यह तालाब में बहोत सारे पानी होंगे। यह तालाब में बहोत सी मछली भी होगी। यह तालाब में बहोत से पक उ जानवर-जंतु पानी पीते होंगे।

मंदिर है यह मंदिर काफी सुन्दर है यह मंदिर बहुत बड़ी भी है यह मंदिर में --